इस दृश्य में हमें टाटा मोटर्स का इमारत नज़र आ रहा है।

इस तस्वीर में हमें कुछ मलबा नजर आ रहा है।

यहां पर सारे व्यक्ति अपना अपना जाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में आपको रात का--

और वेह कुछ काले और सफेद रंग के पक्षी खाना खाते हुए भी नजर आ रहे हैं।

कुछ कुर्सियां नजर आ रही हो और कुछ ग्रे कलर की ड्रॉ नजर आ रही--

और हरे हरे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में आपको कुछ छात्र बैठकर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।

और ऊपर एक पखा भी चल रहा है ट्यूशनस का नाम लग रहा है एच_डी एजुकेशन एस_एस_टी सी_सी_एस_टी ।